चॉकलेट ओरियो केक एक स्वादिष्ट और क्रीमी डेजर्ट हैं।

ये दुकाने ऑफलाइन मार्केट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दोनों पर उपलब्ध होती हैं।

स्टेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां कलाकार वक्ता नेता शिक्षक या अन्य व्यक्ति अपनी प्रस्तुति देते हैं।

यह तस्वीर एक फिश मार्केट की है।

बेचे जाती हैं यह दुकानें स्थानीय व अछली बाजार सुपर मार्केट या विशेष सी फूड --

पूल एक लोकप्रिय क्यू स्पोर्ट्स है जिसे--

यह एक अत्यंत ही मनमोहक प्राकृतिक दृश्य हैं।

फ्राइड राइस एक लोकप्रिय एशियाई डिश है।

और पीछे के पर्वत बर्फ से ढके हुए हैं।

यह समर हील का मैन चौक है और समर हील में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय भी है।

और इस जगह पर मैक्सिमम टाइम बहोत ज्यादा भीड़ रहती है।